पीछे जनरल स्टोर है और किताबों पर लक्ष्मी माता का चित्र बना हुआ है।

यहाँ पर तीन टेबल है और बच्चे --

और एक आदमी चड्डी बनियान पे एक पत्थर पर बैठा हुआ है ।

घर का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर सी_सी_टी_वी कैमरा लगा है।